मकान की दीवाल का रंग पीला और लाल है मकान की दीवाल से बहुत सारी बिजली की तारे निकली हुई हैं।

इसके बड़े बड़े पंजे हैं जहां पे छोटी छोटी घास लगी हुई है।

एक बाल्टी रखी हुई है पास में एक पोस्टर लगा हुआ है।

फ्रीज के अंदर बहुत सारी पेप्सी की बोतलें रखी हुई हैं।

दुकान में एक लोहे का शटर लगा हुआ है ऊपर एक खिड़की लगी हुई है।

दीवाल पे एक खिड़की है जिसमें पर्दा लगा हुआ है कांच की बनी हुई है खिड़की।

कुर्सियां है एक मेज है बहुत सारे गमले रखे हुए हैं गमले में हरे पेड़ लगे हुए हैं।

चप्पलें रखी हुई हैं एक लकड़ी का दरवाजा है द दीवाल पे एक बिजली का बिल मीटर लगा है।